यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है की यह किसी स्कूल के अंदर का द्र --

और कुछ बच्चे यहाँ पे क्राफ्ट बना रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। सामने एक छोटा सा घर दिख रहा है। दो बड़े-बड़े --

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है की ये कोई जीजस --